के बाजू में दीवार बॉक्स की बनी है जो कि ब्राउन कलर की उसके ऊपर बैनर लगा हुआ है। उस पे किडजी लिखा गया एशिया लार्जेस्ट प्रिस्कूल ।

वीवो के भी छोटे-छोटे बेनर लगे हुए हैं उसके बाजू में एक रैक है। रैक मोबाइल कवर दिख रहे हैं।

इस मेज में एक रेस्टोरेंट दिख रहा है। रेस्टोरेंट के अंदर एक टेबल लगा हुआ है ब्राउन कलर का उसके उपर प्लेट लगी है ब्लैक कलर की उस पर खाना रखा है।

वाइट कलर का चावल दिख रहा है दाल दिख रही है स्टील की तीन कटोरियां हैं सलाद है। सलाद में ककड़ी दिख रही है हरे रंग की नीबू है पीले रंग का सफेद प्याज है।

और इस इमेज में किसी एरिया की फ़ोटो दिख रही है। एरिया में बहोत बारिश हुई है। बारिश की वजह से रोड के ऊपर में बहोत सारा पानी जमा हुआ है।